फिर एक लड़का जहाँ पर पहन के खड़ा है जिसने बास्केटबॉल लिया है फिर उसका छोटा सा घर इसका खिड़की आधा खुली हुई है।

फिर कुछ बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर है और कुछ बच्चे कूदने के लिए ऊपर खड़े हैं।

फिर एशिया की मशीने दिख रही है जो उसके नीचे कम से कम छ: सात आठ नौ दिख रही है जो वाइट कलर की है।

पोस्टर है जिसमें एक आदमी है एक पोस्टर है जिसमें विराट कोहली का तस्वीर हैं।

उसके आगे का पार्ट बहुत टूटा -फूटा है एक आदमी है जो उसको चेक कर रहा हैं।

छज्जा बना हुआ है फिर नीचे एक आदमी है जो रेड कलर का कपड़ा पहना है और जो पिछे हाथ रख कर खड़ा है फिर एक सामने आदमी है जो फोटो क्लिक --

ये इमेज में मुझे एक दुकान दिख री है जो बुके है फिर पीछे बुक रखे हुए है जो बहुत मोटे -मोटे है फिर एक --

आदमी है जो बैठा हुआ है जो पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है उसके गले में माला है जो व्हाइट जो रेड --

फिर अ स स्विमिंग पूल के इधर पेड़-पौधे उगे हुए हैं फिर स्विमिंग पूल के आगे में--

एक पैर नीचे रखा है और एक हाथ ऊपर रखा है जिसमें जूता पहना है ब्लैक कलर का जूता पहना है सिल्वर कलर की कैफे नहीं है और जिसमें बाय लिखा है।

एक आदमी को कुल्हाड़ी से मिट्टी में कोड़ रहा है और दूसरा आदमी कुल्हाड़ी लेकर --

इस इमेज में मुझे जिम का सीन दिखाई दे रहा है जिसमें आधा ब्लैक एंड व्हाइट है और आधा कलरफुल है।

ओर नीचे पिज्जा दिख रही है जिसमें बड़ी-बड़ी पिज्जा लिखी हुई है आगे में गेट --

एक लड़की है जो डांस कर रही है जो लाल पर वाइट साड़ी पहने हुए हैं जो एक माला लगे हुए हैं जो गेंदा फूल --